मे बोहोत सारे बिल्डिंग है। दुकान के चार बोहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है। आसमान में बोहोत सारा क्लाउडस भी है।

इधर भी एक सामने एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क में एक महिला चलकर जा रहा है महिला के मुख में मास्क भी है रास्ता के सामने --

की साइड मे इलेक्ट्रानिक्स की दुकान है। दुकान मे बोहोत सारे इलेक्ट्रानिक्स के प्रोडक्ट हैं। दुकान के बाहर भी बोहोत सारे पेटी हैं।

इधर एक ग्रॉसरी शॉप है ग्रॉसरी शॉप बहुत बड़ा है।

दुकान के आस पास कुछ बाइक खड़ा हैं। कुछ महिला कुछ लोग भी दुकान के अंदर खड़ा हैं। दुकान के बाहर भी खड़ा हैं।

दूर में बहुत सारा गाड़ी रास्ते में चल रहा है। रास्ते के आसपास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

आयरन करना ड्रेस है। दिवाल पे एक घड़ी भी है। इधर रोज बहोत सारे लोग ड्रेस पे आयरन करने के लिए आते हैं।

इधर मंदिर में पूजा हो रहा है बहुत सारे पुरोहित बहुत सारे महिला एक साथ बैठकर पूजा कर रहे हैं महिला के माथा पर मुकुट भी है सामने बहुत सारे --

इस में बहुत सारे लोग और हुई है। स्टेज में एक सिंहासन भी है। कुछ सियार भी दिखाई दे रहा है। आस पास में कोई लोग नहीं दिखाई दे रहा है।

बाहर एक अ ए अलमारी दिखाई दे रहा है। अलमारी के अंदर --

इधर एक ग्रॉसरी शॉप्स दिखाई दे रहा है शॉप्स के अंदर एक है बस्ता में बहुत सारी चीज़ है अ कुछ खाने का पैकेट --

रोज बोहोत सारे लोग अं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आती हे । दुकान की सामने टेबल में कुछ अं नोटबुक दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक पैलेस दिखाई दे रहा है रॉयल पैलेस । यहाँ पे एक हो रहा है। पैलेस के सामने गेट सजाया है। बोहोत सारे फूल लगाया है लाइट्स लगाया है।

यहाँ पे एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में बहुत सुंदर-सुन्दर दो महिला की स्टैचू दिखाई दे रहा है। पे बहुत सारे --

सलून के बाहर में बोहोत सारे बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इधर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है। स्विमिंग पूल की पानी भी बहुत सुंदर है। इधा डोज बहोत सारे लरका लरकी छोटा छोटा वा --

पौधा खड़ा है चार पाँच बहुत खूबसूरत है आस पास मे अदर एनिमल भी है।

कुछ बस्ता भी दुकान में दिखाई दे रहा है। इस दुकान मे रोज बहुत लोग सब्जी खरीदने के लिए आती है।

परथमा करने के लिए आती भी है एक चर्च की दो पास में दो नोटिस बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

प्राइवेट कार एकदम टूटा-फूटा है गाड़ी का सर्विसिंग मे लाया है।

इधर एक शादी का अनुष्ठान हो रहा है सामने एक स्टेज सजाया है। स्टेज में बोहत सारा फूल लगाया है एक सिंहासन भी है।

मसाला दरी है। टिशू पेपर भी है। कुछ लोग टेबल चेयर में बैठकर खाना खा रहा है। दूर में सोफ़ा भी दिखाई दे रहा है।

इधर एक एचडीऐफसी बैंक दिखाई दे रहा है। बैंक बहोत बड़ा है। बैंक के सामने चार लोग सीढ़ी पे खड़ा है।